इस पूरे फोटो में हरी भरी घास दिख रही है।

इस तस्वीर में तंबू के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है।

इस फोटो में सीढ़ियां दिख रही हैं जिस पर आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है आलमबाग।

सामने एक फ्रिज रखी हुई है जिसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुई हैं।

और बहुत सारे पर्दे लगे हुए है जो कि नीले आसमानी रंग के है।

इस फोटो के अंदर बहोत बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं साइड में एक रोड दिख रही है और कुछ हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

यह फोटो मेट्रो की है जिसमें एक मेट्रो आती दिख रही है मेट्रो की पटरियां दिख रही है।

फोटो में बहुत सारी कुर्सियां रखी दिख रही हैं जोकि काले रंग की हैं।